ये आदमी खड़े हैं और इन्होंने बैग टांग रखा है।

और यहां पर एक लड़का और एक लड़की की शादी हो रही है।

और यहां पे इमेज भी रखी हुई है।

ये यहां पे आप देख सकते हो--

ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये बस खड़ी हुई हैं और यहाँ पे जय श्री लिखा हुआ हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो।

आप देख सकते हो पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं यहां पे घास वगैरा भी लगी हुई है।

है यहां पे आप देख सकते हो ये बिल्डिंग बनी हुई है।

यहां पे दाल देखे जाते हैं ये।

देख सकते हो यहां पे ये मशीन लगा रखी हैं।

सफेद रंग के गुब्बारे दिख रहे है। यहां पे ये लड़की और लड़के बैठे हुए है। यहां पे कुर्सिया भी रखी हुई है।

ये यहां पे आप देख सकते हो ये लैट्रिन की सीट दिख रही है।

सॉस की बॉटल रखी हुईं हैं यहां पे आप देख सकते हो पारले जी की बिस्किट रखे हुए हैं।

और एक आदमी ने काले रंग के कपड़े पेहन रखे हैं।

ये यहां पे आप देख सकते हो ये लाइब्रेरी --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

हर खानो में बुक ही बुक दिख रही है यहां पे एक मेज भी--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

हरी हरी घास देख रही है और यहां पे आप देख सकते हो पहाड़ दिख रहा है।

और ये यहां पे पहाड़ दिख रहे हैं।

सीढ़ी दिख रही है आसमान दिख रहा है यहा पे पेड़ ही पेड़ दिख रहे है।

और यहां पे ये कपड़े दिख रहे हैं ये यहां पे--

हरे हरे रंग की शर्ट और काले रंग का कच्छा पहन रखा है।

ये यहां पे आप देख सकते हो फौजी ढाबा लिखा हुआ है यहां पे गाड़ियां खड़ी हुई हैं।

रखे हुए हैं फूल पीले रंग के लाल रंग के संतरे रंग के--

हरे रंग के हैं कुछ तोते पीले पीले रंग के--

ये यहां पे पर्फ्यूम ये यहां पे दवाइयां दिख रहीं है ये स्टैम्प रखी हुई है।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

पांच परसेंट लिखा हुआ है और यहां पे--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

देख सकते हो पंखे भी लगे--